कई-कई किसिम के फल व फ्रूट हैं जैसे मैंगो है कई-कई चीजें हैं अमरुद है सेब है संतरा है।

एक्सिस बैंक बेतिहता ब्रांच है और ये बैंक काफी --

ये आई.टी सेक्टर के ऑफिस है। यहाँ पे आई.टी सेक्टर से रिलेटेड काफी वर्क हो --

ये गैराज है यहाँ पे गाड़ियां बनती हैं। कई प्रकार के गाड़ियां देखिये खड़ी हैं टाटा की हुंडई की मारुति सुजू --